ये बहुत लंबी है यहां पे लोग मछलियां पकड़--

यह नदी बहुत लंबी है ये लोग बहुत ही मेहनत से मछली पकड़ रहे हैं।

इसके पास एक ताड़ का पेड़ है जो बहोत ही लंबा है इस कंपनी से बहोत सारे धुएं निकल--

वस्तुएं रखी गई है।

जिसे रखा गया है यहाँ पे कुर्सियाँ भी है और यहाँ पे बहोत सारे --

बहोत ही सारे लोग है जो कि एक कोलोनी जैसे रहते है।

बहोत प्रजातियां की मछली मिलती हैं यहां पे लो--

बहुत सारे वर्क्स काम करते यहां पे बहोत सारे--

इस घर में बहोत सारी मिठाइयां रखी गई हैं और यहां पे पानी भी है जिसको इसमें सेट किया गया--

पे घड़ी भी है और इसके चारों तरफ एक काउंटर लागत गया है इसमें बहुत सारी मिठाइयाँ रखी गई हैं और इसकी दीवाल बहुत ही --

यहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जैसे कि--

बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं।

आज इसका कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है यहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं और खाते हैं इसके चारों तरफ--

और अपनों की ज्यादा खाते हैं इसके चारों तरफ बहुत--